कई ईंटों का रंग लाल भी है।

इसके बाद शॉप पे एक आदमी अपना फोन --

इसके अलावा इसके टेबल पर बहुत--

इसके बाहर लिखा है।

डांस कर रहे हैं उन्होंने सेम कलर ड्रेस की ड्रेस --

जिसका नेम है करतार एक्यूप्रेशर--

पड़ा है जिसका कलर येलो है।

ताज लगें हैं उस पर साथ ही दो आदमी--

उसके साथ ही एक ब्लू कलर --

यह एक रोड की तस्वीर है।

सुंदर तय करके रखे गए हैं।

दो आदमी जिन्होंने ब्लू रंग के कपड़े पहने हैं सामने--